हेलो गाइस देख सकते हैं यहां पे काफी --

क्या लुक दिखाई दे रहा है देख सकते हैं काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोग और जगह देख सकते हैं इसमें।

कपड़ा वगैरह इकट्ठा है और यहां पर काफी सारा --

टेस्ट लिया जा रहा है और ये टीचर वहाँ पे खड़ा है | देख सकते हैं काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को और जबरदस्त देख सकते हैं |

लगे हुए हैं दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को बढ़िया --

घुमने के लिए बैठने के लिए इधर-उधर देख सकते हैं लाइट पे फंदा वगैरा लगा दिया है।

हेलो गाइज देख सकते हैं इसमें काफी सारे विकेट वगैरा लगे हुए है और ये क्रिकेट ग्राउंड है।

जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा और काफी मस्त दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं|

हेलो गाइस देख सकते हैं यह मिस्टी की दुकान है और काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को |

पिंक कलर पीला कलर --

यहां से बाजार तरफ बाजार से गांव तरफ देख सकते हैं ये भाई --

और ये सजावटी के अंदर जग दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को देख सकते है और इधर पे --